यहाँ एक चाय की दुकान है और ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है लाल रंग का।

उसपर सफ़ेद और लाल रंग किया हुआ है और नीचे छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए है।

और एक फुल है गुलाबी और सफ़ेद रंग का --

यहाँ एक मैदान है जहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और एक बन्दा पीछे बैठा हुआ है।

बस अ हरे और सफ़ेद रंग की है और एक रिक्शा है यहाँ पे इस रिक्शे में एक --

और उस साइड बोहोत सारा सामान रखा हुआ है।

उस मंदिर की दीवार पर छोटे-छोटे लोग बनाए हुए हैं कुछ तस्वीर बनाई हुई है।

यह एक समुद्र में हाथी है उसके सिर पे लाल रंग का टीका लगा हुआ है।